और यहाँ पे कुछ रेत पड़ी हुई है गिट्टी भी पड़ी हुई है और यहाँ पर कुछ ईटे भी रखी हुई है।

और यहाँ नीचे की ओर कुछ बाल्टियां भी नजर आ रही है और यहाँ पर आजू बाजू भी दुकान लगी हुई है जो की फ्रूट की है।

और यहाँ पर कीनारों की ओर बड़ी - बड़ी बाउंड्री है और यहाँ पर हरे - भरे पेड़ - पौधे भी नजर आ रहे है कुछ खम्बे भी दिखाई दे रहे है।

और यहाँ पर ये बिल्डिंग का रंग क्रीम कलर का दिखाई दे रहा है और यह पत्थरों से बनी हुई है सामाने की ओर एक बड़ा- सा रोड गया हुआ है और दरवाजा बना हुआ हैं।

सजा हुआ है और यहाँ पर भिन्न प्रकार के गुब्बारों से सजाया गया है और यहाँ पर एक बहोत बड़े - बड़े --

डालसे लगे हुए है फर्श बने हुए है और यहाँ पर एक ब्लैक कलर की कुर्सी --

बिगर छपाई वाला है सामने की ओर रोड गया हुवा है रोड पर कुछ पेड़ पौधे भी नजर आ रहै है।

यह एक दुकान का नजारा है और यहाँ पर ए बड़े - बड़े टॉवर्स भी दिखाई दे रहे है।